और यहाँ पर पीछे खिड़कियाँ भी लगी हुई है जिससे बाहर का उजाला आ रहा है और पीछे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है।